बहोत बडा मंदिर है। यहाँ पे पूजा वूजा सब राम मंदिर इस टाइप का-

पूल पूरा पूल खाली है। पूल है। सरकारी पूल है। अपना पूरा --